पुल चारों ओर फर्श है और पीछे हड़ी झाड़ियां और कुछ गुलाबी रंग की दीवारें हैं।

इन टैंक में पानी की सफाई किस जाती है बीच में पाइप और प्लेटफार्म लगे हैं।

दुकान में सजावट का सामान और टेंट इत्यादि किराए पर देने का काम करती है।

यह साफ लग रहा है की लोग खा ना खा चुके है।